एक मैकेनिक के पास में लेकर गए तो उसने यार दो-तीन घंटों को बोल दिया ठीक करने के लिए।

कितना बढ़िया लग रहिया न ये गिलास ।

और पहाड़ो मे तो आ रिहा ये।

और कितना मस्त लग रहा है यार ये गुलाब का फूल।

और बादल कितने अच्छे लग रहे हैं कितना मजा आता होगा यहाँ घूमने में यहाँ।

स्वराज का सात सौ पैंसठ एफई ।

क्या स्टेट बैंक का एटीएम दिख रहा है भाई।

आर वाह कितना बाद तालाब है ये गाँव का।